साइड में एक बड़ा लाइट भी लगा हुआ है।

यह एक बजाज सेवा केंद्र है।

इस भोजनालय में दो व्यक्ति खाते प्रतीत हो रहे हैं और एक व्यक्ति चलते हुए।

यह एक रिस्पेक्शन रूम है इस रूम में बहुत सारे लंबे-लंबे चेयर लगे हुए हैं।

इस कैफे में बहुत सारे चेयर भी दिख रहे हैं।

यह मगरमच्छ पानी के ओर जाते हुए प्रतीत हो रही है।

ऊपर तरफ बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

इनमें से एक बोर्ड में लिखा गया है एस_बी_आई तो दूसरे मैं लिखा हुआ है बिवो ।

दाएं ओर एक ईंट का घर बन रहा है।

यह घर के पीछे एक और घर है जिसका रंग है पिला और नीला।

साइड में दो पंखे लगे हुए हैं।

यह एक सड़क है सड़क में बहुत सारे वहां रखे हुए हैं।

दुकान के बाहर एक स्कूटी रखा हुआ है ।

दुकान में बहुत सारे चीज दिख रहे हैं जैसे की केला एप्पल बाहर में एक डस्टबिन दिख रहा है जिसका रंग है ब्लू ।

बाहर में बहुत सारे डब्बे पड़े हुए हैं डब्बों का रंग है पीला।

मोबाइल चार्ज करने के लिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस महिले ने चप्पल पहना हुआ है।

पीछे में एक संतरा रंग का बाल्टी रखा हुआ है।

यह एक सड़क है सड़क में बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

इस साड़ी के दुकान में बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं।